इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग हमें ब्राउन रंग दिख रही है और-उस ऑरेंज रंग की है उसमे हमें कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग हमे लाल रंग की दिखाई दे रही है बिल्डिंग मे हमे दरवाजे खिड़किया दिखाई दे रही है सामने हमे मैदान दिखाई दे रहा है।

जो हमें नील रंग की दिखाई दे रही है और सामने हमें रैलिंग भी दिखाई दे रही है और कुछ लाल रंग के गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है नीचे की तरफ़ हमें एक रास रास्ता दिख रहा हैं और आसमान दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज मे हमे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर हमे एक बस दिखाई दे रही है बस हमे पीले रंग की दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे हमे एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है क्लासरूम मे हमे टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है जो हमें लकड़ी से बनी हुई दिख रही है।